ये हॉल है डेकोरेशन किया गया है आगे वाइट कलर के सोफे रखे हुए है।

यहाँ पे अ सीढ़ियाँ बनी हुई है ब्लू कलर में एंड ग्रीन कलर की यूनीफार्म पेहने है लड़के है बहुत ज्यादा --

वहाँ पर छोटे-छोटे साइड पेड़ लगे हुए हैं एंड पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर में।

जिस्चार्स रखे हुए हैं रेड कलर में एंड भगवन की फोटो भी लगी हुई है उसमे --